और पंखे लगे हुए है झूमर लटक रहे है बहुत सारी तस्वीर लगी हुई है लाइन से--

ये एक लड़का है जिसने हेयर कटिंग कर रखी है इसकी मांग --

दीपक है एक मे झंडा सा झंडा है आउट साइड में दो लोग खड़े हैं

इसमें एक है और एक चेयर पर बैठा है जो की का मोबाइल पर बात कर रहा है कांच में देख रहा है।

इन गुफाओं मे बहुत पतली सी गुफाएं हैं इन गुफाओं के अंदर से दो लोग निकल रहे हैं और निकलते हुए दिख रहे है।

ये एक होल है जिसमे व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है जिसमे गेट है एक खिड़की दिखाई दे रही है।

ये शायद बस स्टैंड है यहाँ पर दो बस खड़ी है बड़ी-बड़ी बस है जिसमें एक अ ब्लैक और गुलाबी है।